जमीन दिखाई दे रही हैं आसमां का कलर व्हाइट दिखाई दे रहा है।

जिसमें तीन खिड़कियाँ बनी हुई है उसमे रेड कलर के शायद गुब्बारे है सजे हुए है सामने गैलरी दिख --

एक लड़का दिखायी दे रहा है और एक बच्चा दिखायी दे रहा है जो सामने की ओर देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ फोटो --

एक सैलून दिखाई दे रहा है जो कि सजा हुआ है जिनमें बलून लगे हुए हैं। बलून ग्रीन एण्ड व्हाइट दिखाई दे रहे हैं। मालें फूल के सजे हुए हैं जिसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ अंदर। सामने बड़ा आइना दिखाई दे रहा है। बहुत सारी चेयर दिखाई दे रही।